जैसा की आपको दिख रहा है एक नदी है साइड मे किनारा है नदी का उस पर हरे से पेड़-पौधे है दूर तक एक किनारा दिख रहा है और आसमान एक दम खाली है न कोई पक्षी है न कोई जानवर है बहोत ही खली सा लग रहा और पानी बहोत गहरा लग रहा और पानी का कलर एक दम साफ़--

इसमें स्विमिंग पूल बना हुआ है कार्नर पे इसमें उतरने का रास्ता है ऊपर से फिसल पट्टी बनी हुई है जिस से अपन पानी में उतर सकते है पीली कलर की छतरी बानी हुई--

जैसा के हमको दिख रहा है पत्थर-पत्थर की दीवाले बनी हुई है पत्थर के पास चट्टाने है और उस के पास में हरी-भरी हरयाली है।

जैसा की आपको दिख रहा है यहाँ पर हरी कलर की जाली है जाली की पीछे दो पेड़ दिख रहे--

जिओ के पास गिलास रखे हुए पीछे का आदमी का फोटो बना हुआ है साइड मे चित्र बने हुए हैं जो की बहुत ही अच्छा--